यह एक दुकान है जिस पर एक आदमी खड़ा है कुछ समान ले रहा है उनसे नारंगी और सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है वहाँ पर लकड़ी का एक शैड पड़ा हुआ है उस दुकान में बहुत सारा समान काउंटर में ही पड़ा है दिख रहा है कुछ समान लटक रहा है।

एक ऑफिस है यहा पे मेज रखी हुई है एक लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है मेज पे कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि चल रहा है वहा पे बहुत सारी फाइले रखी हुई है जो कि सफ़ेद कलर के कागज रखे हुए है रेक्स हैं।

उसके पीछे कुछ सामान रखा है ये एक तबेला है और गाय खड़ी हुई है वेह उसकी नाक और सर पे रस्सी बंधी हुई है

ये एक दुकान है जिसमे तीन लोग खड़े हुए हैं | बीच वाले आदमी के मुँह पर बंधा हुआ है | एक आदमी ने अ नारंगी कलर की शर्ट पहन रखी है बीच में बहुत शेल्फ रखी हुई हैं उसमे बुक्स लगी हुई हैं।

यहां पर एक भवन है जिसके बराबर में एक वाहन खड़ा है उस पर सामान रखा हुआ है भवन के बराबर में एक मरम्मत का काम चल रहा है वहां पर ईंटे रखी हुई है ईंटे हुई है और मरम्मत का काम आधा है।

यह एक जगह है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी किताबे रखी हुई है एक औरत बैठी हुई है जो किताबों को बेच रही है किताबे टंगी हुई भी है किताबे रखी हुई है उसके बराबर में भी एक चीज --